इसमें बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं। पंखे दिख रहे हैं।

इसमें बहुत सारे आदमी दिख रहे है। कुर्सियाँ दिख रही हैं।